नमस्कार लिनक्स में system administration के basics पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे
adduser
su
usermod
userdel
id
du
df
मैं इस tutorial में उबंटू 1010 का उपयोग कर रहा हूँ
आपको पहले से ही general purpose utilities in linux tutorial देखने की जरूरत है
जोकि इस website पर उपलब्ध है
दिखाए गये commands का निष्पादन करने के लिए admin access होना आवश्यक है
चलिए पहले सीखते हैं की कैसे एक नया यूज़र बनाएँ
adduser command हमारे लिए एक नया प्रमाणित यूज़र login बनाएगा
sudo command का इस्तेमाल करके हम जितने चाहे उतने यूज़र account जोड़ सकते हैं
चलिए मैं आपको sudo command का एक संक्षिप्त वर्णन let हूँ
sudo command administrative यूज़र को एक command को एक super यूज़र की तरह निष्पादित करने की अनुमति देता है
sudo command के पास कई सारे विकल्प हैं हम विकल्पों के बारे इस tutorial में आगे जानेंगे
चलिए अभी new user बनाना सीखते हैं
अपने keyboard से एक साथ ctrl alt और t दबा कर terminal खोलिए
यहाँ मैंने पहले से ही terminal खोला है
यहाँ command type करिये sudo space adduser और enter दबाइए
आपको यहाँ एक password देना होगा
मैं यहाँ admin pasward दूंगा और enter दबाऊँगा
terminal पर टाइप किया हुआ password नहीं दिखता है
अतः password सावधानी से type करना पड़ेगा
एक बार जब हो जाएगा एक सूचना दिखेगी adduser : only one or two names allowed
चलिए duck named एक नया यूज़र account बनाते हैं
command type करिये:
sudo space adduser space duck और enter दबाइए
हमने duck नामक एक नया यूज़र बना लिया है
एक नये यूज़र को बनाने की प्रक्रिया में इस यूज़र के लिए एक अलग home directory भी in गयी है
कृपया ध्यान दें कि यूज़र duck के लिए हमें एक नया password देना होगा
अपनी मर्ज़ी का password type करिये मेरे उदाहरण में मैं duck type करने जा रहा हूँ और enter दबाइए
कृपया नया password फिर से type करिये
password दो बार सुरक्षा कारणों और पुष्टिकरण के लिए पूछता है
अब नये यूज़र के लिए हमारा password अद्यतन हो गया है
हमसे अन्य जानकारी भी पूछी जाएँगी
किन्तु अभी के लिए मैं key full name duck के रूप में enter करूँगा और enter बटन दबा कर अन्य जानकारी रिक्त छोड़ दूँगा
enter
मैं इसे y दबा कर निश्चित करूँगा
यह इस चीज़ की पुष्टिकरण के लिए था कि सारी सूचनाएँ सही है
चलिए अब जाँचते हैं कि यदि यूज़र account बना है
यह करने के लिए कृपया command prompt पर type करिये
ls space/slash home
और enter दबाइए
home folder में users की सूची दर्शाने के लिए ls command का इस्तेमाल करते हैं
और यहाँ हमारा duck named एक नया यूज़र बन गया है
चलिए मैं slides पर वापस जाता हूँ
अब अगला command su है
su का मतलब switch user है
यह command वर्तमान यूज़र से दूसरे यूज़र में बदलने में मदद करता है
चलिए अब terminal में जाते हैं
command enter करिये
terminal पर su space hyphen space duck और enter दबाइए
आपसे एक password माँगा जाएगा
मैं यहाँ यूज़र duck का password type करूँगा कृपया याद करिये वह खुद duck था
कृपया ध्यान दीजिये terminal पिछले यूज़र जोकि हमारे उदाहरण में duck है से नये यूज़र में बदल जाएगा
इस यूज़र से लॉग आउट होने के लिए type करें
logout और enter दबाइए
अब terminal वर्तमान यूज़र duck से logs out हो जाएगा और पिछले यूज़र account जो vinhai है पर वापस चला जाएगा
चलिए usermod command के बारे में सीखते हैं
usermod command
super यूज़र या root यूज़र को अन्य यूज़र accounts की settings बदलने में सक्षम बनता है जैसे कि
password को बिना password या रिक्त password में बदलना
वह दिनांक दर्शायें जिस पर यूजर account निष्क्रिय हो जायेगा
इस command की कोशिश करते हैं और देखते हैं
मैं अभी terminal पर जाता हूँ
मैं आपको दिखाता how कि कैसे यूज़र account duck के लिए समाप्ति तिथि निर्धारित करें
यहाँ command prompt पर type करिये
sudo space usermod spacehyphen e space 2012hyphen 12hyphen 27 space duck
और enter दबाइए
यूज़र account समाप्ति तिथि जैसा यहाँ command में उल्लिखित है वैसा विकल्प e की मदद से निर्धारित हो जाएगी
अब आपने यूज़र account duck के लिए एक समाप्ति तिथि निर्धारित कर ली है
चलिए अब uid और gid commands के बारे में जानते हैं
id – command सभी users और ग्रुप्स की पहचान को जाँचने के लिए इस्तेमाल होता है
यूज़र की पहचान के बारे में जानने के लिए हम id spacehyphen u का इस्तेमाल करेंगे
group users की पहचान जानने के लिए यह है id spacehyphen g
चलिए इस पर अब कार्य करते हैं
terminal पर type करते हैं
id और enter दबाइए
अब हम system जो इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर user ids और group ids देख सकते हैं
केवल युसर id जानने के लिए hyphen u विकल्प इस्तेमाल करेंगे
command type करते हैं id spacehyphen u
और enter दबाइए
अब हम केवल युसर्स की ids देख सकते हैं
यदि हमें युसर्स का names जानना है तो
to करने के लिए हम type करेंगे
यहाँ terminal पर id spacehyphen n spacehyphen u और enter दबायेंगे
अब names users के ids के बजाय उनके now देख सकते हैं
चलिए अब group ids के लिए commands सीखते हैं
type करते हैं id spacehyphen g
यहाँ हम group ids देख सकते हैं
यदि हम सभी वर्तमान यूज़र के group ids देखना चाहते हैं तो type करें
id spacehyphen capital g और enter दबाइए
कृपया ध्यान दें कि मैंने g को बड़े अक्षरों में टाइप किया है
अपने लिए उत्तर देखें
अब सीखते हैं कि कैसे एक यूज़र account डिलीट करें
इसके लिए हम userdel command इस्तेमाल करेंगे
हम userdel command का इस्तेमाल करके एक यूज़र account हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं
terminal पर इसकी कोशिश करते हैं
यहाँ type करिये sudo space userdel spacehyphen r space duck
मैंनेhyphen r विकल्प इस्तेमाल किया है
यह यूज़र को उसकी home directory के साथ हटाने के लिए है
चलिए enter दबाते हैं और देखते हैं क्या होता है
अब यूज़र duck डिलीट हो चुका है
इसको टाइप करके जाँचिये
ls space/slash home और enter दबाइए
हम पायेंगे कि यूज़र account duck डिलीट हो चुका है
मैं अब slides पर वापस जाता हूँ
लिनक्स system administration में कुछ उपयोगी commands हैं df और du
df command disk पर खाली मौजूद जगह की जानकारी देता है
और du command एक file ने कितनी जगह अधिकृत की है उसकी जानकारी देता है
कृपया नियत कार्य के लिए इन दो commands का इस्तेमाल करिये और output जानिए
चलिए terminal में जाते हैं मैं आपको df command का इस्तेमाल करके कुछ उपयोगी विकल्प दिखाऊँगा
कृपया type करिये df spacehyphen h और enter दबाइए
यहाँ यह filesystem का size और प्रयुक्त की हुई जगह दर्शाएगा
यह मनुष्य के पढने योग्य संरूप में लगी हुई जगह भी दर्शाएगा
अब du command के साथ कुछ विकल्पों की कोशिश करते हैं
इस समय मैं यह मान रहा हूँ कि आपने अपने home folder पर कुछ text files बनायीं हैं
यदि नहीं तो कृपया general purpose utilities in linux पर tutorial को देखें
मैंने पहले से ही commands के निष्पादन के लिए अपनी home directory में कुछ text files बना ली हैं
home folder पर जाइये terminal पर टाइप करिये
cd space/slash home और enter दबाइए
फिर type करिये du spacehyphen s space * astrix dot txt और enter दबाइए
यह command आपको directory में मौजूद txt files उनके फाइल sizes के साथ एक विवरण देगा
नियत कार्य के लिए command prompt पर type करिये
du spacehyphen ch space * astrix dot txt और देखिये क्या होता है
मैं slides में वापस जाता हूँ
संक्षेप में हमने यह सीखा :
नया यूज़र बनाने के लिए adduser command
एक यूज़र से दूसरे यूज़र में बदलने के लिए su command
यूज़र account settings को बदलने के लिए usermod command
यूज़र account डिलीट करने के लिए userdel command
यूज़र ids और group ids की जानकारी जानने के लिए id command
file system size और उपलब्धता जाँचने के लिए df command
एक file द्वारा अधिकृत स्थान जाँचने के लिए du command
इसी के साथ हम system administration के basics पर इस tutorial में समाप्ति की ओर हैं
video इस url पर उपलब्ध है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
अधिक जानकारी इस url पर उबलब्ध है
मैं रवि कुमार आई आई टी बॉम्बे की ओर से विदा लेता हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद